लाइब्रेरी के वॉल्स में हम कई टाइप के मैप्स को या कोई भी को हम लोग चस्पा कर देते हैं जिससे हमें इन चीजों को याद रखने में आसानी होती है। इससे काफी हमें हेल्प मिलती है।

इसको एक लड़का पकड़े हुए है और इस कांच में कई टाइप की तस्वीर रखी हुई --